दो व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक बहुत सुन्दर रास्ता है।

यह एक बहुत सुंदर मंदिर है।

यह एक बहुत सुंदर घर है।

अउर पहाड़ के ऊपर घर भी बना हुआ है।

यह एक बहुत सुंदर ग्राउंड है।